और उस उपवन में लोगों को चलने के लिए रास्ता भी बनाया गया है जो की देखने में बहुत अच्छा लग --

रास्ते के बगल में एक गोदाम दिख रहा है उसके बगल में विद्युत का स्तंभ है।

एक बाजार मे चाय का दुकान दिख रहा है एक दो बांदा चाय पिने केलिए है।